और दो सारे रूम साइड में कुछ कुछ है और ऐसे कुछ--

की प्लांट्स सै और ये पीछे से यहां पे वो घर सै।

और ये सब व्हाइट क्लॉथस पेहन के जा रहे हैं।

यहां पे इस ऐसे नीचे कपड़े ज हैं।